इस पिक्चर में मुझे वाराणसी का टेम्पल विश्वनाथ टेम्पल का कुछ --

आ ट्रीस है ग्रास है।

और पानी का बोटल भी है।

और एक छोटा सा रास्ता है।

आ बोहोत छारे अ औरतें हैं।

कुछ डिशेस रखे हुए हैं।

अ एक मंदिर दिख रहा है।

जो कि अ उसको घेरा गया है।

जो कि मिस्त्री का काम कर रहे हैं।

और एटीएम दिख रहा है और बाहर --

एक बहुत बड़े बुक की शॉप है ये।

और अ बोहोत छारे लोग हैं एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं।

और यहाँ पे पेप्सी का भी ऐडवरटाइसमेन्ट किया हुआ है।